और कुछ माटी डली हुई है कुछ माटीयो का ढेर लगा हुआ है छोटे-छोटे कुछ पेड़ लगे हुए बगल से हरा सा घास है चारो तरफ मिटी है और कुछ मशीने गाड़ी हुई --

बड़ा सा लोहे का ब्रिज है उसमें शायद लाइटिंग लगी हुई है सामने खुला आसमान है पानी बह रहा है खूब लहरे बह रही हैं सामने से सूरज की रोशनी आ रही है।

ये एक छत बन रही है जिस पर रेत और सीमेंट है और गिट्टी है सामने बड़ा सा एक पहाड़ लगा हुआ है रेत का उसके बगल से कुछ गाड़ियां रखी हुई हैं।

कुछ बैनर टंगे हुए ब्लू कलर की दिवालें हैं दो लोग खड़े हुए हैं सामने गाड़ी के एक लेदर की जॅकेट पहनी हुई आदमी --

चारो तरफ खुला मैदान है उसमे हल्का-हल्का पानी भरा हुआ है एक टोर रखा हुआ है पत्थर रखा हुआ है बगल से छोटे-छोटे पेड़ हैं निचे द्रकनी है कुछ गिट्टियां रखी हुई हैं कुछ सामने बड़े से खेत हैं उसमे --

एक स्टेज है जिस पर दो लड़की हैं छोटी जो साड़ी पहने हुए गजरा लगाए हुए पीछे तीन लड़के जो वाइट कलर के कुर्ते पहने एक लड़के के हाथ में ऑरे एक आ धुआँ का ऑरेंज कलर का उड़ाने वाला है उस --

और साइड पे एक तार डला हुआ है लाइट का उ बीज उ से कुछ चारों तरफ से आसमान है उसमें हल्का-सा धुआँ हो रहा है सामने कुछ मिट्टी डली हुई है कुछ कंकर डले हुए--

पीछे एक बड़ी सी प-गा-गा पेड़ है जिसमे चारों तरफ घास है आगे एक लोहे की का बना हुआ कुछ --

येलो और ब्लैक कलर का डिवाइडर है नीचे टाइल्स लगी हुई हैं जो कि एक स्लेटी कलर की टाइल्स हैं व्हाइट उजाला हो रहा है बहौत सारा।

एक हॉल है जिसमें बहोत सारे पंखे लगे हुए हैं लाइट लगी हुई है और माय हैल्प माय आई हैल्प लिखा हुआ है जिसपे कुछ दो लोग खड़े हुए हैं उसमे पीछे चॉकलेटी कलर का पूरे मे फर्निचर लगा --